यहाँ पे एक बहुत बड़े-बड़े चट्टान दिखाई दे रहे है जोकि बहुत संख्या में है उन के पीछे में बहुत से --

यहाँ पे दो सड़ग है जिनके एक किनारे पे एक व्यक्ति चलता हुआ नजर आ रहा है उस सड़ग के किनारे में बहुत ही सुन्दर-सुन्दर गार्डन जैसे फूल को रख दिए गए है जोकि बड़ा ही प्यारा दिख रहा हैं ।

यह एक बहुत बड़ा किला दिखाई दे रहा है जोकि बड़ा है उसके चारों तरफ बॉउंड्री घिरी हुई है जिनमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ नजर आ रहा है आसमान सब भी अच्छे से साफ है और पेड़ सब दिखाई नहीं दे रहे --

यहाँ एक दो -तीन बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके नीचे में बैनर लगा हुआ दिखाई दे रहा है और रेलिंग भी लगी हुई है उसके आगे में कुछ मूर्ति भी दिखाई दे रहे --

यहाँ पे दूर पे बहुत एक स्कूल नज़र आ रहा --